यह तस्वीर शाम का है सड़क के किनारे स्ट्रीटलाइट भी है।

कमरे मे मैट बिछा है और दीवार पर कुछ उपकरण लटके हैं।

सामने एक साइकिल भी है साइकिल का रंग लाल और काला है।

दुकान के छत पर पंखा भी है जो सफेद रंग का है।

और दुकान के अंदर कुछ पेय पदार्थ है।

जिम का वातावरण साफ सुथरा है।

इस तस्वीर में दो लोग खड़े हैं।

यह एक कमरे का तस्वीर है जिस कमरे में तीन खिड़कियां हैं।

सामने के दीवार पर एक ए_सी है जिसका रंग सफेद है।

कुछ गुब्बारे सफेद रंग के हैं और कुछ लाल रंग के हैं और कुछ नीला रंग का है।

जिम में एक लकड़ी का फर्श है जिसका रंग भूरा है।

पेट्रोल पंप पर कुछ कर्मचारी मौजूद हैं।

इमारत के सामने कई मोटरसाइकिल है।

प्रतिमा ध्यान मुद्रा में हैं जिसमे हाथ गोद में रखे हुए हैं।

मस्जिद के चारों ओर पेड़ पौधे हैं जो हरे रंग के हैं।

यह एक शांत और शांतिपूर्ण जगह है।

आसमान साफ है आसमान का रंग नीला है।

इस तस्वीर में एक खुला मकान है जिसमें एक बड़ी इमारत है।

इसमें बड़ी खिड़कियां और दरवाजे हैं।

कक्षा में कई छात्र हैं जो शिक्षक की ओर ध्यान दे रहे हैं।

दुकान में एक सीढ़ी भी है जिसका रंग नीला है।

इस पर यमाहा का लोगो और शोरूम का बड़ा नाम अक्छरो में लिखा हुआ है।

दीवार पर एक झरने का तस्वीर है।